scripts and functions with scilab के स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है
scilab में फाइल प्रारूपों के एक संक्षिप्त परिचय के साथ आरम्भ करते हैं
जब कई कमांड्स निष्पादित की जानी होती हैं तो इन स्टेटमेंट्स को scilab एडिटर के साथ एक फाइल में लिखना अधिक सुविधाजनक हो सकता है
इन्हें script फाइलें कहा जाता है
ऐसी ही एक स्क्रिप्ट फाइल में लिखे कमांड्स को निष्पादित करने के लिए स्क्रिप्ट फाइल के नाम के बाद exec फंक्शन का प्रयोग किया जा सकता है
सामान्यतः इन फाइलों का एक्सटेंशन इनकी सामग्री के आधार पर sce या sci होता है
sci एक्सटेंशन वाली फाइलों में scilab फंक्शन या user defined फंक्शन्स शामिल होते हैं
इन फाइलों को निष्पादित करना scilab environment में फंक्शनों को लोड करता है किन्तु उन्हें निष्पादित नहीं करता है जबकि
sce एक्सटेंशन वाली फाइलों में scilab फंक्शन तथा user defined फंक्शन्स शामिल होते हैं
कृपया याद रखें कि sce and sci के रूप में एक्सटेंशन के नामकरण की परंपरा नियम नहीं हैं अपितु scilab समुदाय द्वारा पालन की जाने वाली एक परंपरा है
कंप्यूटर पर scilab console विंडो खोलते हैं
कमांड प्रॉम्प्ट पर कमांड pwd टाइप करने के द्वारा करंट वर्किंग डायरेक्टरी की जांच करें
scilab console विंडो के टास्क बार पर जाएँ तथा scilab एडिटर को खोलने के लिए एडिटर विकल्प पर क्लिक करें
मैंने पहले ही एक फाइल में कमांड्स टाइप कर ली हैं तथा इसे helloworldsce के नाम से सेव कर लिया है इसलिए मैं open a file शॉर्टकट आईकन का प्रयोग करके उस फाइल को खोलूंगा
helloworldsce फाइल को सेलेक्ट करें तथा ओपन पर क्लिक करें
आप नयी फाइल में कमांड्स टाइप कर सकते हैं तथा इस फाइल को फाइल मेन्यू के माध्यम से helloworldsce के रूप में करंट वर्किंग डायरेक्टरी में सेव कर सकते हैं
scilab एडिटर के मेन्यू बार पर एक्जीक्यूट बटन पर जाएँ तथा load into scilab विकल्प को सेलेक्ट करें
यह फाइल को scilab console में लोड करेगा
console में फाइल लोड करने के बाद स्क्रिप्ट आउटपुट प्रदर्शित करती है जैसा कि आप देख सकते है:
इसमें कमांड्स तथा संबंधित कमांड्स के लिए प्राप्त आउटपुट दोनों शामिल होते हैं
अब a की वैल्यू को बदलकर 1 करें
एडिटर में फाइल मेन्यू पर जाएँ तथा सेव पर क्लिक करें
हम exec कमांड का प्रयोग करके स्क्रिप्ट को सीधे scilab interpreter से भी निष्पादित कर सकते हैं तथा स्क्रिप्ट फाइल के लिए मार्ग प्रदान करते हैं:
जैसे exec ब्रैकेट्स में i डबल कोट्स में helloworldsce जो फ़ाइल का नाम है और एंटर दबाएँ
स्क्रिप्ट फाइल exec फंक्शन के प्रयोग के साथ समान आउटपुट प्रदान करती है
अब फंक्शन्स के बारे में बात करते हैं:
फंक्शन्स की परिभाषा कीवर्ड फंक्शन से शुरू होती है तथा कीवर्ड end फंक्शन पर समाप्त होती है
मैंने पहले ही scilab एडिटर का प्रयोग करके functionsci में एक फंक्शन फाइल सेव कर ली है
मैं वह फाइल खोलूँगा
जैसा कि आपने देखा कि फंक्शन यहां परिभाषित किया गया है
इसमें डिग्रीज़ आउटपुट पैरामीटर हैं और रेडियन इनपुट पैरामीटर है
radians2degrees नामक फंक्शन्स के लिए
मैं एक्जीक्यूट मेन्यू विकल्प का प्रयोग करके इस फंक्शन को scilab में लोड करूँगा
फंक्शन अब scilab कंसोल में लोड हो गया है
इसे exec कमांड का प्रयोग करके भी लोड किया जा सकता है
एक बार फंक्शन के लोड हो जाने पर उस फंक्शन में विशेष आर्ग्युमेंट पास करके इसे किसी भी अन्य scilab फंक्शन की तरह कहा जा सकता है
परसेंट चिन्ह का एक मेंटल नोट बनायें तथा इसके प्रयोग का कारण याद करें
अब हम %pi/2 के radians2degrees और %pi/4 के radians2degrees के लिए मान निकालते हैं
परसेंट pi/2 %pi/2 एवं radians2degrees परसेंट pi by 4 %pi/4
अब हम एक से अधिक इनपुट और आउटपुट आर्ग्युमेंट वाला एक फंक्शन देखेंगे
यह फंक्शन इनपुट आर्ग्युमेंट के रूप में पोलर कोऑर्डिनेट्स लेता है तथा आउटपुट आर्ग्युमेंट के रूप में रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स देता है
मैं वह फाइल खोलूँगा जिसे मैंने पहले ही टाइप कर लिया है
यहाँ आप देख सकते हैं कि फंक्शन polar2rect के लिए x और y आउटपुट पैरामीटर हैं तथा r और theta इनपुट पैरामीटर हैं
मैं exec विकल्प का प्रयोग करके इस फंक्शन को scilab में लोड करूँगा
एक बार फंक्शन लोड हो जाने पर हमें फंक्शन को कॉल करने की आवश्यकता होती है इस फंक्शन को दो इनपुट आर्ग्युमेंट एवं दो आउटपुट आर्ग्युमेंट की आवश्यकता होती है
इसलिए r = 2;
थीटा = 45
और अब हम इसे कहेंगे x1 comma y1 आउटपुट पैरामीटर्स इक्वल टू फंक्शन नेम polar2rect ब्रैकेट में r comma theta और एंटर दबाएँ
आप x1 और y1 की वैल्यू देखेगें
scilab की आकर्षक विशेषताओं में से एक यह है कि आप एक सिंगल sci file में कई फंक्शन्स को परिभाषित कर सकते हैं
इसे करते हुए कृपया याद रखें कि डिफ़ॉल्ट रूप से एक फंक्शन में परिभाषित किए गए सभी वैरिएबल लोकल होते हैं और एक विशेष फंक्शन में प्रयुक्त इन वैरिएबल्स का स्कोप फंक्शन परिभाषा के end फंक्शन कीवर्ड के साथ समाप्त होता है
इस विशेषता का लाभ यह है कि हम विभिन्न फंक्शन्स में एक ही वैरिएबल नामों का प्रयोग कर सकते हैं
ये वैरिएबल्स तब तक मिश्रित नहीं होंगें जब तक हम ग्लोबल विकल्प का प्रयोग नहीं करते
ग्लोबल वैरिएबल्स के बारे में और अधिक जानने के लिए help global टाइप करें
कृपया ध्यान दें कि यदि एक फंक्शन के अंदर किसी भी वैरिएबल को देखा या निरीक्षण किया जा रहा है तो disp की आवश्यकता होती है
एक फंक्शन फाइल के अंदर आप स्वयं के लिए एक स्टेटमेंट के अंत में सेमीकॉलन ; लगाने के प्रभाव की जांच कर सकते हैं
इसे disp स्टेटमेंट के लिए भी चेक करें
inline फंक्शन्स:
फंक्शन कोड के सेगमेंट होते हैं जिनमें लोकल वैरिएबल्स के साथ साथ सुपरिभाषित इनपुट एवं आउटपुट होता है
एक फंक्शन को परिभाषित करने का सबसे आसान तरीका `deff कमांड का उपयोग करना है
scilab inline फंक्शन बनाने की अनुमति देता है तथा विशेष रूप से तब उपयोगी होता है जब फंक्शन की बॉडी छोटी होती है
इसे deff फंक्शन की मदद से किया जा सकता है
यह दो स्ट्रिंग पैरामीटर लेता है
पहली स्ट्रिंग फंक्शन के इंटरफेस को परिभाषित करती है तथा दूसरी स्ट्रिंग फंक्शन के स्टेटमेंट्स को परिभाषित करती है
deff कमांड scilab में फंक्शन को परिभाषित करता है और इसे लोड भी करता है
स्पष्टतया एक्जीक्यूट मेन्यू विकल्प द्वारा deff कमांड का प्रयोग करके परिभाषित किए गए फंक्शन को लोड करने की कोई आवश्यकता नहीं है
इस अवधारणा की व्याख्या करने के लिए हम एक उदाहरण देखते हैं:
मैं inlinesci नामक एक फाइल खोलूँगा जहाँ मैंने inline फंक्शन लिखा है
मैं एडिटर विंडो को रिसाइज़ करूंगा
जैसा कि पूर्व में उल्लेख किया गया है कि पहली स्ट्रिंग फंक्शन डिक्लैरेशन को परिभाषित करती है तथा दूसरी स्ट्रिंग फंक्शन के स्टेटमेंट्स को परिभाषित करती है
हम इस फंक्शन को scilab एडिटर में लोड करेंगे तथा 90 के degrees2radians और 45 के degrees2radians मान निकालने में इसका प्रयोग करेंगे
एक फंक्शन न केवल अपने आतंरिक अन्य फंक्शनों को बल्कि स्वयं को भी कॉल कर सकता है
यह फंक्शन की recursive calling है
उदाहरण के लिए एक इंटीजर के फ़ैक्टोरियल की गणना करने के लिए एक फंक्शन लिखते समय इसकी आवश्यकता होती है
आइये scilab में फाइल प्रारूपों पर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं:
जैसा कि पूर्व में उल्लेख किया गया है कि scilab में दो प्रकार के फाइल प्रारूपों sce फ़ाइल प्रारूप तथा sci फ़ाइल प्रारूप का प्रयोग किया जाता है
sce फाइल एक्सटेंशन वाली फाइलें स्क्रिप्ट फाइलें हैं जिनमें वे scilab कमांड्स शामिल होती है जिन्हें आप एक इंटरैक्टिव प्रकार के scilab सेशन के दौरान प्रविष्ट करते हैं
उनमें फंक्शन को लिखने में प्रयोग की गयी कमेंट्स लाइनें भी शामिल हो सकती हैं तथा वे स्क्रिप्ट को एक्जीक्यूट करने के लिए exec कमांड का प्रयोग भी कर सकते हैं
sci फाइल एक्सटेंशन वाली फाइलें फंक्शन फाइलें होती हैं जो फंक्शन स्टेटमेंट के साथ शुरू होती हैं
एक अकेली sci फाइल में कई फंक्शन परिभाषायें हो सकती हैं जिनमें बहुत से scilab स्टेटमेंट शामिल होते हैं जो फंक्शन आर्ग्युमेंट पर या आउटपुट वैरिएबल पर संक्रियाएं करते हैं जिसके बाद उनका मूल्यांकन किया जाता है
यह हमें scilab में scripts and functions के स्पोकन ट्यूटोरियल की समाप्ति पर लाता है
scilab में कई अन्य फंक्शन हैं जिन्हें अन्य स्पोकन ट्यूटोरियल में शामिल किया जाएगा
scilab लिंक्स देखते रहें
यह स्पोकन ट्यूटोरियल फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर इन साइंस एंड इंजीनियरिंग एजुकेशन fossee द्वारा बनाया गया है
fossee प्रोजेक्ट पर अधिक जानकारी
भारत सरकार के एमएचआरडी आईसीटी के माध्यम से राष्ट्रीय शिक्षा मिशन द्वारा समर्थित
अधिक जानकारी के लिए
आईआईटी बॉम्बे से मैं यश वोरा आपसे विदा लेता हूँ
हमारे साथ जुड़ने के लिये धन्यवाद अलविदा